पर्दे भी लगे हुए हैं गुलाबी व्हाइट कलर के इस तरह भगोना भी रखा है।

नदी दिखाई दे रही है उसपे एक नांव है ढाल जैसा है उसपे पौधे लगे हुए हैं।

कत्थई कलर और सफेद कलर की दीवाल है।

बहुत सारी कुर्सियां हैं सामने एक फोटो लगी हुई है।

व्हाइट कलर का घर है और दीवार पे गैलेक्सी लिखा है।

यह एक गार्डन है। बहोत सुंदर है।

लाइट जल रही है पीला गुलाबी सफेद कलर का पर्दा है।

इस साइड भी बेंच दिख रहा है बेंच पे काफी सामान रखा है।

एक मॉल है कपड़ों का।

कुछ दिए हैं लाल कलर के है उन्हीं के ऊपर रखी हुई है।

सामने बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे कुछ उसमें औरतें हैं कुछ आदमी--

छोटे छोटे पौधे हैं घास है।

फि उसके जस्ट सामने एक व्हाइट कलर का हाउस --

उस तरफ गुलाबी कलर के फूल लगे हुए हैं रेलिंग भी लगी हुई है हरी कलर --

फूल लगे हुए हैं लाल कलर के और उसके इस तरफ भी घर बना हुआ है। उसके अंदर कार खड़ी हुई है।

सामने ताजमहल जैसा कुछ बना है। उस पे लिखा है महाऋषि यूनिवर्सिटी ।

इस तरह बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है कुछ बस है।

बहोत सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे--

पोस्टर लगे हुए हैं उसके ऊपर टीन भी रखी हुई है पेड़ भी दिखाई दे रहा है ओर--

सामने किचन दिखाई दे रहा है फर्नीचर का काम हुआ है और खिड़की भी दिखाई दे रही हैं।

तीन कटोरी भी दिखाई दे रही हैं दो में सब्जी है एक में दाल है।

पोस्टर भी दिखाई दे रहे है सामने दरवाजा नीले कलर का दिखाई दे रहा है।

चारों तरफ मैट बिछी हुई है और खंभे भी लगे हुए तार भी दिखाई दे रहा है।

मुझे बहोत बड़ी सी नदी एक दिखाई दे रही है। बीच में पूल की तरह कुछ बना हुआ है।

चे बहुत सारे लोग नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं उसके सामने भी कुछ बना हुआ है और उस तरफ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

मोर नजर आ रहा है और एक महिला भी नजर आ रही है।

पोस्टर भी दिखाई दे रहे हैं और एक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

मेज पर भी बहुत सारी सजावट हुई है और बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बाडे चारों तरफ लगे हुए हैं।

अपने हाथ में बाल लिए हुए है।

फ्रिज में चॉकलेट काफी सारी रखी है।

चॉकलेट सिरफ है किंडर जॉय है।

के जस्ट सामने ये रेड कलर की रखी हुई है।

सामने ही मिट्टी का ढेर है उसपे काफी पेड़ लगे हुए हैं।

सामने मॉल की तरह एक दुकान बहुत बड़ी सी दिखाई दे रही है बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे कुछ औरतें कुछ आदमी--

के इस तरफ दूध भी रखा हुआ है पालक भी रखी धनिया भी रखी हुई है बैगन भी है और भी बहोत सारी चीजे दिखाई दे रही है।